सामने रेलवे स्टेशन कुछ पटरिया दिखाई दे रही है और प्लेटफार्म पर कुछ इंसान रेल की ट्रेन की --

सामने तीन से चार आदमी नज़र आ रहे हैं और कुछ बॉटल भी नज़र आ रही है जो रेड कलर की है।

ऐसा लग रहा है ये कोई शॉप हो कॉफी शॉप पीछे लिख रखा है ये कोई कॉफी की दुकान या चाय की दुकान लग रही है।

दिखाई दे रही है रेलवे स्टेशन की कुछ पटरियां और कुछ यात्री भी नजर आ रहे हैं।

जिसमें कुछ मॉडल्स की फोटो लगा रखी है।

एक कमरे में दो चार टेबल लगा रखी है दो चार कुर्सी लगा रखी है ऐसा लग रहा है कोई रेस्टोरेंट या कोई होटल है।

और सामने दिखाई दे रहे हैं दो कुर्सियां हैं दो चेयर लगा रखी है ये कोई बड़े हॉल या कोई कमरे में लगा र --

सामने एक बड़ी दुकान नजर आ रही है जिसपे एयरटेल फोर जी लिखा है और वोडाफोन का कुछ निशान लगा रखे हैं ऐसा लग रहा है कोई ये सिम --

कुछ टंकियां और कुछ बैनर पड़े हैं सामने और कुछ डब्बे पड़े है जो कागज के हैं कुछ बोरियां भी पड़ी हैं ये कोई --

कुछ ब्लॉक्स बना रखे ब्लॉक्स मे कुछ दुकान का समान पड़ा है ग्रोसरी का समान पड़ा है एक कूलर भी पड़ी है।

दो मंजिली मकान है और सामने कुछ तार भी नजर आ रहे हैं लाइट के।

सामने दो मंजिला दुकान दिखाई दे रही है जैसे कोई कपड़े की दुकान हो सकती है या कोई बड़ा शोरूम हो सकता है उसपे वी टु लिखा हुआ है।

सामने कुछ खाड़ियां नजर आ रही हैं और कुछ काफी ज्यादा मात्रा में टेंपू और कुछ गाड़ियां और कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो स्कूल लग रही है इसके सामने एक बड़ा बड़ा बैनर में लिखा है शहीद--

यह एक दुकान है कूलर की इसके अंदर काफी ज्यादा कूलर दिखाई दे रही है कुछ एल_ई_डी भी दिखाई दे रही है।